बाप रे ये पर कितने बढ़िया मकान सब दिख रहा है छे पतंग बढ़िया बिल्डिंग सब दिक रहल छे और कितना अच्छा अच्छा सब आदमी सब कितना बीच में नदी छे गाड़ी उदी अबल नाव भी दिख रहा है देख में चमकल जग--

हीनी सब केतना नमाज इहो मस्जिदों छीये ओकरा बाद मस्जिद में कुर्सी सब भी लागलो छलो लागे छो खाना पीना के भी व्यवस्था छो लाइट सब कोना रहल छो इ मस्जिद केतना अंदर से देखें में सुंदर लगे छो देखे छी बाहर मे चप्पल सब बोरा उड़ा सब बिछल लगे छो ठंडी रहे।

यहाँ भी दुकान भी बहुत बिया लागल लोछि किताब सब सुन्दर सुन्दर लाल पीला हरा सब छे वहां देख लोछि और बाजु में गेट भी लाइट भी लागलो छे बहुत कुछ लागलो छे किताब यहाँ सस्ता सस्ता मिलेगी जगह बढ़िया दुकान बढ़िया सब कुछ बढ़िया--

मस्जिद कितना सुन्दर लगल छे मस्जिद में बहुत आदमी सब नमाज़ पढ़ल छे जगह कितना मस्त लाइट लगल छे मस्जिद कितना सुंदर छे।